और दो बैग टेबल पे रखे हुए हैं यहां पर एक जग रखा हुआ है।

आया है। बटर मेलन वाटरमेलन है मैंगो है।

यहां पर एक मेला सा नजर आ रहा है जहां पर भी बहोत सारी शॉपै लगी हुई है।

और एक पीछे को सोफा पड़ा हुआ है पीछे से दो चार आदमी नजर आ रहे हैं।

ये लाइट लगी हुई है और ये पेड़ साइडों में खड़े हुए हैं ऊपर से बादल नजर आ रहा है येलो कलर --

यह एक ब्रिज नजर आ रहा है जिसमें की तीन दरवाजे नजर आ रहे हैं ऊपर से छतरी से बनी हुई है।

और ग्रीन कलर के कैचप रखे हुवे हैं और रेड कलर के हैं।